एक यूनियन बैंक है। यूनियन बैंक का एटीएम है।

जिसके अन्दर सुंदर-सुंदर कपड़ों का प्रदर्शन करने हेतु लगाए गए हैं।

यह एक हरा-भरा पक्षी का कोई पिंजरा लग रहा है।

के आसपास हरे रंग की झाड़ियाँ बिछी हुई है।